पहनी हुई है और सफेद रंग के जूते डालकर खड़े हुए हैं।

और एक बाइक जाती हुई नजर आ रही है जिसपे पीछे वाले व्यक्ति ने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ है।

अनार बम फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यह दृश्य रात का है।

इस दृश्य में आपको एक चिल्ड्रंस बुक स्टोर नजर आ रहा होगा पर उस स्टोर में--

और नीचे एक अंकल सामान लेते हुए नज़र आ रहे हैं।

हरे भरे उसपे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

पर पार्क में कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है।

इस दृश्य में आपको चंडीगढ़ का एक पार्क --

इस दृश्य में आपको बरफ़ की वादियां नजर आ रही है।

सभी खिलाड़ियों की टी-शर्ट नीले रंग की और पैंट ब्लैक रंग की नज़र आ रही है।

कुछ गमले नजर आ रहे हैं उसके साथ में ही बी_बी_ए बी कॉम पी_यू_सी का एक बोर्ड नजर आ रहा हैं।

जिसके नीचे एक रेस्टोरेंट है और वहां उसके बाहर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

जिस शॉप का ऊपर बोर्ड लगा हुआ है रोहन चाय सेंटर ।